एक नसेनी रखी हुई है एक तीन आग बुझाने के जो लंबे पाइप रहते हैं वो लगी हुई हैं।

सामने एक टी_वी दिख रहा है दो कांच के दरवाजे हैं।